यहाँ पर भी हमें एक कैंपस वगैरा नजर में आ रहा है ये शायद कोई स्कूल होगा अंदर और स्कूल का कैंपस हमें दिख रहा है यहाँ पर वॉल लगा गया है वॉल दिया गया है और अंदर स्कूल का बिल्डिंग हमें दिखाई दे रहा है प्राइमरी स्कूल होगा शायद।

यहाँ पर हम टोटो देख रहे है अम ऑटो वगैरह रेड कलर का एक टोटो यहाँ पर है ये शायद कोई फैक्ट्री के अंदर आया हुआ है कोई सामान सुमान लेने के लिए बा लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज हो रहा है।

यहाँ पर ऊपर हम देख रहे बहुत अच्छा यहां पे मकान बनाया गया है जो बहुत ही अच्छा है डिजाइन है मकान का और भी बहुत कुछ है यहाँ पर देख के पता चल रहा है।

इस को बनाने के लिए जो लेबर को काम करता है यहां पर मस्ती वगैरा लेबर वगैरा यहां पर काम होता है और बहुत ही अच्छा है नजर रखो।